दूर में जलाशय के पार में बहुत सारे बड़ा-बड़ा पेड़ है कुछ बिल्डिंग भी है।

बिल्डिंग के सामने कुछ प्राइवेट कार खड़ा है।

दो मिरर भी है |

इधर पे एक पहाड़ दिख रहा है।

भी दिख रहा है |

सभी ताला यहाँ बंद है |

विद्यालय में बहुत सारी स्टूडेंट पढ़ती है |

इधर पे एक फील्ड में खेला हो रहा है बहोत सारे लड़का खेल रहा है।

साड़ी के ऊपर चार अनदर कलर की साड़ी भी है।

इधर भी एक फील्ड दिख रहा है फील्ड बहुत बड़ा है बहुत सुंदर है।

फील्ड की पास में एक रोड भी दिख रहा है | रोड में एक वाइट कलर की कार जा रहा है |

इधर पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है कॉलेज बहुत बड़ा है।

इधर पे एक स्कूल है स्कूल बहुत बड़ा है।

बहुत सारे लाइंस भी है सामने एक प्लेटफार्म में कुछ लोग चल कर जा रहा है।

इधर पे म्यूजियम है म्यूजियम बहोत पुराना है।

ये एक डांस अकैडमी है | अकैडमी बहुत बड़ा है |